एसबीआई बैंक और ऐ_टी_ऍम है ओर इकसे पास में महेश कपास है ये कल का व्रिकत दिखाय देता है और एसबीआई बैंक और ऐ_टी_ऍम यहा पर--

और एक बाहर ली साईड में एक स्कूटी भी खड़ी है और श्याम बाबा का मंदिर है वो श्याम दरबार मंदिर--

पुलिश थाना कुचामन सिटी बाहर ली साइड एक गाड़ी भी खड़ी है और गाड़ी के साइड बहुत सारा पेड़ पौधा भि लग रहा हे कही सरा पेड़ पोधा है झक --